जहाँ पर लोग अपना वर्काउट करते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइट भी दिखने को मिल रही है और यहाँ की दिवाले रेड और ब्लैक कलर की इससे पेंटेड है यहाँ पर हमें टाइल्स भी देखने को मिल रही है।

यहां पर अलग-अलग कलर्स के फूल रखे हुए है जैसे कि रेड येलो ओरेंज इत्यादि यहां पर एक हमे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है जो कि इन फूलों को बेच रहे है।

इस एटीएम में हमें अ काँच के दरवाजे नजर आ रहे हैं जोकि अ ब्लू कलर से पेन्टेड हैं इसके सामने हमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जोकि अ वेट कर रहे हैं अंदर जाने का ।

दिए हुई तस्वीर में हमें अ छत पर तीन मजदूर नजर आ रहे हैं जो के अपना काम कर रहे हैं| यहां पर हम देख सकते हैं बहोत सारी मिट्टी रेती और सीमेंट पड़ी हुई है जो की ये आदमी अपनी --

रखी गई है| यहाँ पर हमें अ एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी फोटो ली जा रही है| हमें यहाँ पर अ बोक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं जो की बंद--